और बहुत सुंदर फूल दिख रहे हैं।

और यहाँ एक फैन दिख रहा हैऔर टेबल्स भी रखी --

जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ मुझे बहुत सारे नारियल के पेड़--

एकत्र होकर बैठी हुई हैं।

रखा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है और साथ में भारत नक्शा भी दिख रहा है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ--